जैसा कि हम देख पा रहै है सामने काफी बड़ा एक बेंक है जेको जोकि पीएनबी बैंक है व्हाइट कलर का है।

और जैसा कि हम देख रहे है यहाँ पर सामने एक टेबल है। टेबल पर एक प्लेट में जोकि बिरयानी है और जोकि बासमती चावल से बनाई हुई है सामने एक जग रखा है जिसके अंदर पानी है गिलास भी है।

दो मिस्त्री साइड मे बैठे है। एक मिस्त्री पेंचों को कस रहा है दूसरा हथोड़ी लेके बैठा हुआ है। एक एक बैठा हुआ है जो --

नमकीन है बिस्कुट है मैग्गी है चॉकलेट का डब्बा भी है | साइड मे ये सब भी चीज़े आलमीरे में रखी हुई है | यहाँ सभी सब एक-एक चीज़े ले सकते है |

जैसा की हम देख रह है यहा पर काफी बड़ा घर बनाया हुवा है जिनका जिसका यह मेन डोर है।